केले का पेड़ है तार है।

दीवाल पर चित्र बना हुआ है पाइप लगी हुई है बोर्ड है स्विच है लाइट है टाइस है फर्श --

एक लड़का है जिसकी फोटो खींची गई है। बुद्ध--

और एक अच्छा सा गार्डन है छोटे पौधे हैं बड़े पौधे हैं रोड है खंभा है।